बिल्डिंग के आगे एक झंडा लगा हुआ है।

पीछे एक काउंटर भी दिखाई दे रहा है।

इसके बाहर बहोत सारे ऑटो लगे हुए हैं।

वे ऑटो येलो और ग्रीन कलर के हैं।

पीछे बहुत सारी दुकानें भी लगे हुए हैं।

यहां बच्चों के स्लाइड्स लगे हुए हैं।

यह एक कच्चा घर है इसकी छत पट्टे की है।

इस फोटो में हमें एक खेत दिखाया गया है।

इस फोटो में हमें एक बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दिखाई दे रहे हैं।

यहां बीच में एक औरत लाल कलर की साड़ी पहनकर सितारा बजा रही है।

इस फोटो में हमें एक बहुत सुंदर बुद्धा टेंपल दिखाई दे रहा है।

एक बड़ा सा नीला कलर का बोर्ड लगा हुआ है।

दरवाजे पर एक भगवान की फोटो लगी हुई है।

यह एक घर बनाया जा रहा है।

एक स्क्रीन पर सी_सी_टी_वी फुटेज दिखाई दे रहा है।

एक फायर एक्सटिंग्विशर दिखाई दे रहा--

इस फोटो में हमें एक बिल्डिंग दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में हमें एक हाईवे दिख रहा है।

यह लोहे का छत बनाया जा रहा है।

पीछे हमें बहुत सारे इंसान दिखाई दे रहे हैं।

एक पिंक कलर के फूल की माला है एक ऑरेंज कलर के फूल की माला है।

इस फोटो में हमें एक बहोत बड़ा पूजा दिख रहा है।

यह एक इंसान व्हाइट कलर की शर्ट पहन कर दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में हमें एक वाटर पार्क दिख रहा है।

यहां रंग बिरंगे स्लाइड्स लगे हुए हैं।

यह एक रास्ता भी दिखाई दे रहा है।

यहां हमें दो इंसान दिखाई दे रहे हैं।

नीचे हमें घास दिखाई दे रही है।

इस फोटो में हमें एक सुंदर सा व्यू दिखाया गया है।

साइड में बहुत सारी गचियां लगी हुई है।

उपर एक बोर्ड लगा हुआ है।

यह घर पूरा सफेद रंग का है।

यहां बहुत सारे इंसान काम कर रहे हैं।

दाएं तरफ एक ब्रिज दिखाई दे रहा है।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

पीछे हमें पेड़ दिख रहे हैं।